कई पेड़ दिखाई दे रहें हैं लकड़ियाँ नजर आ रही है।

कई पेड़ नजर आ रहें हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

कई सारे पेड़-पौधे नजर आ रहें हैं।

लेपटॉप नजर आ रहा है।

खिड़कियाँ दिखाई दे रहे हैं बिजली के तार नजर आ रहे हैं एक आदमी दिखाई दे रहा है।

कई खिड़कियां दिखाई दे रहीं हैं।

परदे नजर आ रहें हैं।

कुछ बैडमिंटन रैकेट दिखाई दे रहे हैं टेनिस रैकेट दिखाई दे रहे हैं।

कई रंगों के फूल नजर आ रहा हैं फूल मालाऐं दिखाई दे रही है।

कुछ बक्से दिखाई दे रहें।